git में stashing और cleaning पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम stashing के बारे में सीखेंगे
हम सीखेंगे कि
इस tutorial को record करने मैं उपयोग कर रही हूँ
आप अपनी पसंद का कोई भी editor उपयोग कर सकते हैं
इस tutorial के अनुसरण के लिए आपको git commands और git में branching का ज्ञान होना चाहिए
यदि नहीं तो सम्बंधित tutorials के लिए हमारी website पर जाएँ
अब stashing के बारे में सीखते हैं
stashing branch के अस्थाई बदलावों को सेव करने में उपयोग होता है
जब branches स्विच हो रही हों तो यह committing के बिना वर्तमान कार्य को रोकने में मदद करता है
अस्थायी बदलावों का stash किसी भी समय वापस लाया जा सकता है
याद करें हमने tutorial की इस श्रृंखला में term stash के बारे में पहले ही सुना है
अब ज़्यादा विस्तार में यह सीखते हैं
terminal खोलकर शुरू करते हैं
हम अपनी git repository mywebpage खोलेंगे जो हमने पहले बनाई
type करें: cd space mywebpage और enter दबाएँ
मैं प्रदर्शन के लिए html files का उपयोग करना जारी रखूँगी आप अपनी पसंद की कोई भी फाइल type उपयोग कर सकते हैं
यहाँ से आगे terminal पर प्रत्येक command टाइप करने के बाद enter key दबाना याद रखें
पहले हम branch list check करेंगे टाइप करें git space branch
मैंने पहले ही chapterthree named एक branch बना ली है
प्रदर्शन के लिए मैंने इसके अंदर एक commit कर लिया है
कृपया ध्यान दें कि आपने एक नयी branch और इसके अंदर एक commit भी बना लिया हो
हम निम्न टाइप करके branch chapterthree में जायेंगे git space checkout space chapterthree
git log check करते हैं
यह वो commit है जो मैंने प्रदर्शन के लिए chapterthree branch में बनाया
अब ls टाइप करके folder की विषय वस्तु check करते हैं
अगर आप windows operating system में कार्य कर रहे हैं तो ls command की जगह dir command उपयोग करें
ध्यान दें यहाँ हमारे पास तीन html files हैं
अब हम mypage html file पर कुछ बदलाव करेंगे
अब निम्न टाइप करके mypage html file खोलें टाइप करें gedit space mypage html space ampersand
मैं अपने writer document से जो मैंने पहले ही सेव किया था इस फाइल में कुछ लाइनें copy paste करुँगी
फिर file सेव और बंद करुँगी
git status check करने के लिए type करें git space status
हम समझ सकते हैं कि हमारे बदलाव अब तक प्रस्तुत नहीं हुए हैं
जब हम एक बड़े project पर कार्य करते हैं तो हमें अक्सर branches को switch करने की ज़रुरत हो सकती है
अब मानिए हम कुछ और करने के लिए अपनी master branch पर वापस जाना चाहते हैं
type करें: git space checkout space master
यह error दिखाता है कि बदलावों को कमिट करे बिना हम अन्य branches पर वापस नहीं जा सकते
मैं अभी बदलावों को commit नहीं करना चाहती क्योंकि मेरा काम केवल आधा हुआ है
अगर हम hyphen hyphen force flag उपयोग करके ज़बरदस्ती इस branch को exit करते हैं तो बदलाव हटा दिए जाएंगे
लेकिन क्या होता है यदि मैं बदलावों को अस्थायी रूप से सेव करना चाहती हूँ यह stashing उपयोग करके किया जाएगा
हम बदलावों को अस्थायी रूप से सेव कर सकते हैं टाइप करें git space stash space save space double quotes में stashed mypage html
यहाँ stashed mypage html उस stash का name है जो मैंने दिया है आप इसे अपनी वरीयता के अनुसार name दे सकते हैं
terminal पर stash name और branch name जहाँ stash बनाया गया है दिखते है
हम git status check करेंगे टाइप करें git space status आप nothing to commit message check सकते हैं
अब हम branches पर जा सकते हैं
अब master branch में जाने की कोशिश करते हैं टाइप करें git space checkout space master
ध्यान दें stashing के बाद हम अन्य branches पर जा सकते हैं
आगे stashing का एक अन्य तरीका देखते हैं
इसके लिए मैं निम्न टाइप करके दोबारा chapterthree branch पर जाऊँगी git space checkout space chapterthree
अब मैं history html फ़ाइल को edit करुँगी type करें: gedit space history html space ampersand
मैं यहाँ अपने writer document से कुछ लाइनें जोडूँगी
फिर फ़ाइल को सेव और बंद करुँगी
अब git status check करते हैं टाइप करें git space status
मानिए उदाहरण के लिए stash में मैं इन बदलावों को एक अन्य तरीके से say करना चाहती हूँ type करें git space stash
ध्यान दें कि यहाँ हमने stash name नहीं दिया
अगर हम stash name नहीं देते हैं तो stash नवीनतम commit के name में सेव किया जाएगा
आगे हम check करेंगे कि stash name और नवीनतम commit समान हैं या नहीं
अब पहले git log check करते हैं
stash सूची check करने के लिए type करें git space stash space list
आप देख सकते हैं कि नवीनतम commit और नवीनतम stash name समान हैं
ध्यान दें कि नवीनतम stash पहले सूचीबद्ध किया जाता है जिसका मतलब है stashes कालानुक्रमिक क्रम में सूचीबद्ध किए जाते हैं
यह वो stash id है जो अपने आप बनेगी
प्रदर्शन के लिए मैं एक और stash बनाऊँगी
इसके लिए मैं story html फ़ाइल को edit करुँगी type करें gedit space story html space ampersand
मैं story html में कुछ लाइनें जोडूँगी
फिर फ़ाइल को सेव और बन्द करुँगी
अब मैं stash में बदलावों को सेव करुँगी
type करें: git space stash space save space double quotes में stashed story html
अब stash सूची check करते हैं टाइप करें git space stash space list
हम देख सकते हैं कि अब chapterthree branch में हमारे पास तीन stashes हैं
कुछ स्थितियों में हमें याद नहीं रहता कि stashes में हमने क्या बदलाव सेव किए हैं
अब देखते हैं इसे कैसे check करते हैं
मानिए उदाहरण के लिए मैं stash @{0} का विवरण देखना चाहती हूँ
अतः type करें: git space diff space stash at the rate @ symbol curly brackets में zero
हम story html के बदलावों को देख सकते हैं यह we है जो हमने stash @{0} में सेव किया
आगे हम stashed फाइल पर कार्य करना जारी रखेंगे
इसके लिए पहले हमें stashes लागू करना है
stash सूची check करने के लिए type करें: git space stash space list
उदाहरण के लिए अब हम stash @{1} लागू करेंगे
यह करने के लिए type करें git space stash space apply space stash @ at the rate symbol curly brackets में 1
यदि आप stash id उल्लिखित नहीं करते हैं तो नवीनतम stash यानि stash @{0} लागू किया जाएगा
आप देख सकते हैं कि हमारा stash सफलतापूर्वक लागू होता है
अब stash सूची check करते हैं टाइप करें git space stash space list
हम देख सकते हैं stash @{1} जो अभी भी सूची में है और यह भविष्य में उलझन पैदा कर सकता है
अतः एक stash लागू करने के बाद इसे हाथ से डिलीट करना बेहतर है
stash @{1} डिलीट करने के लिए type करें: git space stash space drop space stash @ at the rate symbol curly brackets में 1
stash सूची check करने के लिए type करें: git space stash space list
हम देख सकते हैं हमारा stash @{1} मिटाया गया है और stash @{2} stash @{1} हो गया है
अब हम stash को एक अन्य तरीके से लागू करना सीखेंगे type करें: git space stash space pop
हम देख सकते हैं कि हमारा stash @{0} लागू हो गया है
अतः अगर हम stash pop command उपयोग करते हैं तो सबसे नवीनतम stash जोकि stash @{0} है लागू किया जायेगा
दोबारा हम stash सूची check करेंगे टाइप करें git space stash space list
अब हम देख सकते हैं stash @{0} मिटाया गया है और stash @{1} stash @{0} हो गया है
stash pop command stash @{0} लागू करेगी और ise अपने आप डिलीट करेगी
आगे हम सीखेंगे कि सारे stashes को एक बार में कैसे मिटाते हैं
अपनी रेपॉसिटरी से सारे stashes को डिलीट करने के लिए type करें git space stash space clear
दोबारा stash सूची check करेंगे टाइप करें git space stash space list
हम देख सकते हैं हमारी stash सूची अब खाली है
इसके साथ हम इस tutorial के अंत में आ गए हैं
इसे सारांशित करते हैं
इस tutorial में हमने stashing के बारे में सीखा
हमने निम्न भी सीखेंगे:
एक नियत कार्य मेंअपनी रेपॉसिटरी में तीन stashes बनाएं
git stash show command का अन्वेषण करें
git stash show और git stash show stash @{1} commands के बीच अंतर समझें
नवीनतम stash लागू करें
और रेपॉसिटरी से सारे stashes को डिलीट करें
निम्न link पर उपलब्ध video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे download करे और देखें
spoken tutorial project team कार्यशालाएं चलाती है और online tests pass करने वालों को प्रमाणपत्र देती है अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
spoken tutorial project भारत सरकार के mhrd के nmeict द्वारा निधिबद्ध है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
आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूं हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद